और कुछ एक्सरसाइज मशीन रखी हुई है जो की अ कुछ लोग खडे हुए है।

यहां पर अ एक पर्सन जो की लेटे हुए हैं बेड पर अ जिनको कुछ थेरेपी अ वगैरा--

और छत बहोत बड़ी है सेन्टिग लगी हुई है बहुत सारी सेन्टिग लगी हुई है।

और एक बाइक खड़ी हुई है बाइक के साइड से एक पर्सन खड़े हुए हैं एक कार खड़ी हुई है जो की रेड कलर की है।

यहाँ पर किसी का घर बन रहा है और जो कि अभी उसमे पिलर अअ छोटी छोटी दीवालें उठी हुई है।